यह एक बहुत ही बड़ा घर है और इस घर में बहुत से गेट लगे हुए हैं।

यह एक काउंटर है जिस पर कुछ बर्तन रखे हुए हैं और इनके अंदर कुछ खाने का सामान रखा हुआ है।

यह एक मेला है इस मेले में बहोत से डोले लगे हुए हैं।

और इस ट्रक में कुछ सामान लोड हुआ है जो कि संकल से बंधा हुआ है।

और इसके बाहर कुछ बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं और बाहर एक साइकल भी खड़ी हुई है।

और इनके पास में कुछ लोहे के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं।

यह एक कंपनी है इस कंपनी के अंदर बहुत सी मशीन रखी हुई है।

और मशीन के ऊपर दो बोतल भी रखी हुई है।

और इसके बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है और उसके पास में कुछ बिजली के तार भी पड़े हुए हैं।

यह एक रूम है इस रूम के अंदर एक बेड पड़ा हुआ है।

जिस पर एक आदमी पड़ा हुआ है।

और इसकी दीवार में एक सारा पर्दा भी लग हुआ है।

और बेड पर कुछ कपड़े और अखबार रखा हुआ है और एक बैग भी रखा हुआ--

यह एक मां शिकुम्भरी विश्वविद्यालय है और इसमें बहुत सी खिड़कियां लगी हुई है।

और इसकी दीवारों में कुछ बिजली के तार भी है।

और पेड़ के पास में कुछ लोहे के खंभे गड़े हुए हैं जिन पर लोहे के तार लगे हुए हैं।

और इसके पास में कुछ चम्मच भी रखी हुई है।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

यह एक बहुत ही अच्छा रूम है और इस रूम के अंदर एक बेड पड़ा हुआ है जिस पर कुछ तकिए रखें हुए हैं।

जिनमें कुछ खिड़कियां भी लगी हुई है और उनके पास में कुछ पाइप भी लगे हुए हैं।

जिसपर एक कांटा और एक स्टील की ट्रे रखी हुई है।

और दिवाल पर एक घड़ी भी लगी हुई हैं और इसका गेट कांच से बना हुआ है।

एक झोपड़ी का डिज़ाइन है और एक हिरन का।

और बहोत सी खिड़कियां और कुछ गेट लगे हुए हैं।

यह एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के पास बहुत सी साइकल खड़ी हुई है।

मंदिर के बाहर एक सड़क है जिस पर कुछ कुर्सियां पड़ी हुई है और उन पर आदमी बैठे हुए है।

और इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है।

और दो आदमी भी खड़े हुए हैं और उनके पास में एक तिरंगा खड़ा हुआ है।

और इसके पास में बहुत सा सामान रखा हुआ है।

यह एक घर है और इसका गेट लकड़ी से बना हुआ है जिसके पास में एक आदमी खड़ा हुआ है।